यह तस्वीर किसी रेस्टोरेंट की है।

ये तस्वीर किसी जिम की दिखाई दे रही है।

दुकान का कलर है जो वाइट है पास में एक कूलर लगा हुआ दिखाई दे रहा है मकान के अंदर कुछ तीन चार पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं पास में एक बिजली का खंभा है।

और तीन इसमें लाइट लगी हुई है और साथ में ही आदमियों का हाथ में कुछ है जिससे वो दिखा रहे हैं।

इस रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन भी दिखाई दे रही है।

और बैठने के लिए कुर्सियां और टेबल लगी हुई है।

ये बस दिखाई दे रही है इस चित्र के अंदर एक आदमी सामने खड़ा है जिसपे लिखा हुआ है गवर्नमेंट व्हीकल --

चार आदमी सुन रहे हैं एक आदमी --

डस्टबिन रखा हुआ है एक तोलिया टंगा रखा है।

एक दूर पुल दिखाई दे रहा है एक ग्रीन लाइट और रेड लाइट का सिग्नल भी दे रखा है।

पाइप के एल आकर के वी आकर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं।

किसी तालाब या नदी की है जिसमें दो व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे इन दोनों के पीछे नाव है।